यह स्टेज को फूल पत्तियों के सहारे सजाया गया है।

और एक लड़का दिखाई दे रहा है जो बाइक प बैठा हुआ है और पीछे एक सीटि कैफे हैं।

यहां एक सफेद कलर का टैग रखा हुआ है और एक--

तंबू वाला लोहे का सरिया लगाया हुआ है।

और एक पर्पल कलर का और एक गोल सा सफेद सा गुंबद जैसा बना हुआ है सीढ़ियां दिखाई दे रहीं है जिसपे एक आद --

जो टिम में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े नजर आ रहे हैं।

पुस्तक में रखने के लिए जा रहे हैं और इधर बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं।